इमेज में बहुत से फल रखे हुए है यहाँ पर एक टोकरी में नारियल रखे हुए है और केले लटक रहे है यहाँ पर संतरे रखे हुए है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में काफी सारी खिड़कियां लगी हुई हैं यहाँ पर एक पेड़ का कुछ हिस्सा दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर केले लटक रहे हैं और इस दुकान मे एक बोर्ड पे कुछ हिंदी के शब्दों मे लिखा हुआ है।